ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है एंड --

ये एक पेट्रोल टैंक है जहाँ पे ऑरेंज कलर का है।

ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है जहाँ पे दो मेन है और रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक इमेज है जहाँ पे कुछ लोग हैं बाइक है सीढ़ी है।

दो तीन पेड़ है और एक बड़ा सा पहाड़ है।

एप्पल का कलर रेड है एंड वाटरमेलन का ग्रीन एंड गुआभा का येलो ।

बोर्ड और कुछ पेड़ हैं और एक पिलर है और स्काई है। घास का कलर ग्रीन है।